इस फोटो के अंदर सामने बहुत सारे केम्प्यूटर लैपटॉप पड़े हैं।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

और बीच बीच में कुछ जंगले लगे हुए हैं।

और यहां दीवारों के पास में कुछ कपड़े टंगे हुए पड़े हैं बाहर की साइड पानी के कैंपर पड़े हैं गिलास पड़ी है।

सामने दीवारों के पास में गाड़ियां खड़ी है दीवारों के पास में कुछ तस्वीरें भी लगी हुई है।

यहां पर अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं जोकि जाली लगी हुई है लोहे की बीच में इधर कुछ पैकेट के अंदर कुछ सामान पड़ा है।

और इस ढाबे के ऊपर पेटीएम स्कैनर चिपकाया हुआ है बाहर कुर्सी पड़ी है अंदर की साइड एक आदमी खड़ा है।

यहां पर तरह के मोबाइल पड़े हैं यहां पर वीवो फोन मिलते हैं विवो कंपनी है।